एक झोपड़ीनुमा अ अ बैठने का अ दो तीन बने हुए है।

ये एक स्कूल है। स्कूल में अ ड क्राफ्ट का पीरियड्स चल रहा है। टीचर्स बैठी है।

एच.डी.ऍफ़.सी. बैंक का वो वो अन्दर का दिख रहा है।

और उसके पास होटल के पास कुछ अटाला जैसा पड़ा हुआ है कुछ बाइक खड़ी हुई --

यहाँ सब अपने-अपनी फोटो शूट करा रहे हैं पीछे पर्दा लगा हुआ है येलो पीले कलर का --